एक बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को गोद में रखे हुए है। एक पुरुष ने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है। अपने सर पे एक बोरिया रखे है जिसमें हरे कलर का --

और बच्चे खड़े हुए हैं। सामने एक लोहे का स्टूल दिखाई दे रहा है ऊपर एक फिरोजी कलर का बैनर लगा हुआ है।

और गार्डन दिखाई दे रहा है और कहीं घाँस हैं और कहीं छोटे बड़े पेड़ पौधे।